जहां पर कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं।

बहुत सारी स्कूटियां भी लगी हुई है।

साइड में सजाया हुआ छतरी नुमा कुछ बल्ब लगाए हुए हैं।

जिसकी बहुत सी मंजिलें बनी हुई हैं बहुत सी बड़ी खिड़कियां बनी हुई हैं।

तो कुछ पौधे उगे हुए हैं।

एक गुलाब की पौधे हैं।

यह एक इंस्टिट्यूट है जिसका नाम सिमेज है।

लीची इत्यादि रखे हुए हैं।

पेट्रोल पंप के खंभे में कुछ स्टीकर लगे हुए हैं।

जो ऐड के लिए लगाए गए हैं कुछ उजले कलर के--

एक पिलर बना हुआ है लाइट से बना हुआ कुछ लोग साइड में खड़े हो के देख रहे हैं एक माइक भी लगा है बड़ा।

एक ऐड के लिए श्री कमल जी का पोस्टर लगा हुआ है।

यह योगा का स्थान है।

यह एक ब्यूटी प्रोडक्ट का --

बच्चों का पैंपस रखा हुआ है किरकिरी रखे हुए हैं।

यहां एक सजाया हुआ --

यहां पर तीन नावें लगी हैं।

यहां पर एक तालाब है जिसमें कुछ छोटे-छोटे पौधे हैं।

दूस में और भी बहुत से पौधे हैं।

एक व्यक्ति उनमें से कुछ निकाल रहा है।

जिसमें से उजली रंग की पदार्थ निकल रही हैं।

और वह एक हरे रंग की छोटे से कटोरे में --

यहां पर लाल कलर की टॉल्स लगाई हुई है।

जहां पर सलवार सूट मिलते हैं दो लोग --

श्रृंगार स्टोर है जहां एक महिला --

यह एक छोटा सा नदी है।

जहां पर बड़े-बड़े पौधे लगे हुए हैं।

गाड़ी आ रही है नीले कलर की।

यह एक पार्क है।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

कुछ जिम के सामग्री साइड में रखे हुए हैं।

और लड़के ने उजले कलर की जूते पहन रखे हैं वो जींस भी पेहना है।

ड्रामे हो रहे हैं एक सरस्वती मां बने हुए हैं।

तो दो लोग उससे हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं दो झंडे लेकर खड़े हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है जहां पर कुछ लोग खाना खाने आते हैं।

तो कुछ लोग फास्ट फूड खाने आते हैं।

जहां विभिन्न किस्म के सामान रखे हुए हैं।

यहां सजाने के लिए बेहतर--

सी क्वालिटी की साड़ी कुछ लगी हुई है।